और इसके पीछे एक पेड़ भी है।

और यहां पे रेती सीमेंट भी--

और इसके पीछे एक लाल कलर की मशीन रखी हुईं हैं।

यहाँ पे दो चार कुर्सी भी है।

यहां पे बाबा कर के कुछ दुकान है।

और नीचे की तरफ ब्लैक कलर की फर्शें रखी हुई हैं।

यहां पर काफी सारे डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर के--

पे काफी सारे डॉग खेल रहे है।